यहां हम सामने एक बड़ा सा रैक का देख रहे हैं।

साथ ही बहोत ही सुंदर डिटेलिंग की गई है।

एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं नीचे बड़ा सा ब्लैक कलर में कारपेट बिछा है।

ऊपर से बहेता हुआ पानी सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

यहां पर हम एक गार्डन देख रहे हैं।

बहुत से छोटे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पैर पर भी आलता लगाया हुआ दिखाई दे--

और कुछ दुकानें नजर आ रही हैं।

साथी हम सामने कुछ गार्डन देख रहे हैं।

कुछ काला सा दिखाई दे रहा है।

कुछ बिल्डिंगें भी नजर आ रही हैं।

पीछे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

यहाँ हम सामने एक बड़े से गार्डन को देख रहे हैं।

साथ ही ब्रिज दिखाई दे रहा है।